सामने लोग टी_वी भी देख रहे हैं।

दूसरी बात ये सोफा है उसके ऊपर तकिया है सोफा व्हाईट कलर का है।

यह रूम लाइब्रेरी है लाइब्रेरी मे एक--

विलेज है इसका काम का नाम और वलगेट हैं गेट के अंदर--

उ इसके ऊपर आकाश है आकाश का कलर निला है।

और इसके बोर्ड के ऊपर प्राइस कोल्ड ड्रिंक का नाम--

यह एक चित्र जंगल का है जंगल में--

वह ऊपर एक आकाश है आकाश का कलर भी नीला है।

यह चित्र एक टेबल का है टेबल में--

उसके बाहर और एक दरवाजा है दरवाजे का कलर भी रेड है।

और उसके ऊपर चारों ओर पंखे और फैन लगे हुए हैं।

और ये भैया पानी भी बेच रहे हैं।